मुझे पित्नी भी दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में सेवनटीन गाड़ी दिखाई दे रहा है।

मुझे यही पिक्चर में बहुत ज्यादा फूल दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर मे घर दिखाई दे रहा है।

मुझे पहाड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे ये पिक्चर में बहुत सारा कपड़ा दिखाई दे रहा है।

और मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रहा है और मुझे--

और मुझे सिम सिम गुन भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे यह पिक्चर में कार दिखाई दे रहा है।

मुझे घर दिखाई दे रहा है।

मुझे टेबल दिखाई दे रहा है।

मुझे टेबल दिखाई दे रहा है।

मुझे बादल दिखाई दे रहा है।

वहां मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे यह पिक्चर में चार सोफा दिखाई दे रहा है।

ये फूल दिखाई दे रहा है।

मुझे पिक्चर में बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।